यहाँ पे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे है पेड़ काफी लंबे नज़र आ रहा है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

नज़र आ रहा है। जंगल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। यहा पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ नीम का दिखाई दे रहा है। यहा पे पेड़ मे काफी सारी पत्तिया नज़र आ रही है। पत्तिया हरी दिखाई दे रही है। नीचे कुछ जमीन दिखाई दे रही है। यहा पे कुछ मट्टिया नज़र आ रही है। यहा पे कुछ खेत दिखाई दे रहा है।

नजर आ रहा जंगल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। जंगल मे काफी सारे पत्थर नजर आ रहे है। कुछ पत्थर छोटे दिखाई दे रहे है। कुछ पत्थर बड़े नजर आ रहे है। यहा पे कुछ घासें दिखाई दे रही है। यहा पे काफी सारे पड़े पौधे नजर आ रहे है। यहा कुछ पेड़ बड़े दिखाई दे रहे है। यहा पर एक लड़का नजर आ रहा है।